अंदर सीटें व टेबल्स लगी हुई है बैठने के लिए बाहर पेड़ पौधे व हरियाली है।

यहां पर अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है उधर कांच का गेट लगा हुआ है जिसपे बहोत खूबसूरत सी वुडन वर्क भी किया हुआ है।

जहां बहोत सारा धान तथा और भी कई अन्य बोरियां व कट्टे भरे हुए हैं यहां बहोत बड़ी धान की फैक्ट्री है।

यहां काउंटर पे बहुत सारी मिठाइयों के बॉक्सेस चचाए गए हैं तथा यहां सीढ़ी के बहुत बड़ा ढेर लगाया गया है।

पड़ी हुई है जो यहां पर इक्कठा की गयी है यहां पर अलग अलग प्रकार के मशीनें तथा समान है।

एक चर्म रोग विभाग की हैं यहाँ बहोत सारी लोग आते हैं।

यहां पर दो लोग हैं तथा उनके पास एक छोटा बच्चा है जो पानी में खड़े हुए हैं तथा यहां पानी के ऊपर एक पुल बना हुआ है।

धूल में कुछ जलाया जा रहा है।

यह फोटू मस्जिद की फोटो हैं यह फोटू में मस्जिद में लोग प्रियर कर रहें हैं।

रेड एंड व्हाइट कलर का कालीन भी बिछा हुआ है।

यह फोटो एक काली गाय की फोटो है।

जिस वजह से इसे बहौत ज्यादा खूबसूरत सजाया गया है वहां अलग अलग प्रकार के फूल है।

यहां संतरी के ऊपर येलो कलर की लेहरी बांधी हुई है तथा यहां बहुत लोग हैं जो जा रहे --

यहां पास में बहुत ज्यादा लोग हैं।

यहां पूल के दोनों साइड रेलिंग्स लगी हुई हैं।

यह फोटो किसी बहोत ही बड़े होटल या भवन की है यहां बहोत ही खूबसूरत सा होटल है।

जिसका इंटीरियर बहोत ही पुराने जमाने के महल जैसा है यहां दोनों साइड बहोत ही ऊंची ऊंची इमारतें हैं।

तथा बीच मे एक गैलरी है जो बहोत ही खूबसूरत लग रहा है यहां धूप की रोशनी बहोत कम आ रही है।

यहां दोनों साइड बैठने के लिए--